और इसपर नीले नीले और बिलु कलर का पेंट हो रहा है।

डैशबोर्ड खड़ा है और ऊपर पंखा चल रहा है और नीचे ब्लैक और व्हाइट कलर का फर्श पड़ा --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

यहाँ पे खम्भे भी लग रहे हैं आ--

बहोत सारी मेज भी रखी है मेज पर बहोत सारा सामान रखा भी हैं।

कुछ लोग ने लाल टी शर्ट पहन रखी है।

और यहां पे बहोत सी रोकड़ी है।

इस दुकान के ऊपर ल लाल कलर का पेंट भी हुआ है।

अ दुकान पे भी वाइट कलर का पेंट हो रहा है।

र बाहर एक वॉचमैन खड़ा है।

गार्डन ही गार्डन में घास भी लगा हुआ है।

यहां पे कई तरह के पेड़ भी लगे हुए है।

कागज पड़े हैं सभी कलर के--

उसके ऊपर हरे कलर --

बिजली के खंभे भी है और खंभों पर--

और उधर एक कलर का पोस्टर दिख लगा हुआ है उस पे किसान लिखा रहा है।

यहां पर तीन आदमीया खड़े हैं और यही पे तीनो बात कर रहे हैं और एक आदमी हाथ में--

रेड कलर का गेट लग रहा है।

वैसे यहां पर बहोत से लोग जमा हो रहे हैं।

बड़ी मोचड़ी भी है मूर्ति के पीछे बड़ा सा घर है।

इस इस बैंक के अंदर लाइटें भी लगी हुई हैं।

कुछ यह पे रखी हुई है।

लाल कलर का लोहे का इस स्टूल है उसके पंजे में बहोत से कपड़े रखे हुए हैं।

यहां पर बहुत से गमले भी रखे हैं और सारे व्हाइट हाउस में लाइटिंग हो रही हैं।

और ऊपर व्हाइट कलर की चद्दर भी लगी हुई है।

ये एक प्लॉट है। प्लॉट पे यहां गिलहरी बैठी है।

बीच में एक खाट पड़ी हैं और मे लोहे का बड़ा मैन गेट भी लगा रहा हैं।

और पीछे बहोत बहोत बड़ी बिल्डिंग भी है।

ये एक बटा दो में--

और ये कमरा पूरा डेकोरेशन का है और इस कमरे में बड़ा शीशा रखा है और नीचे--

ये एक वर्कशॉप है यहां पर एक आदमी काम कर रहा है और यहां पे बहोत से लोहे भी पड़े है हैं।

और पीछे बहुत सारी बाइक और आदमी भी खड़े हैं और ये--

और इधर एक आदमी बैठा हुआ है वहां पे भी एक ऊपर फूल लगे हुए हैं।

और ये पेट्रोल पंप तेल भी बना है।

इसके आगे कट्टे पड़े हैं बहुत सारे और इसके पीछे बहुत बड़ा लोहे का जाल भी बन रहा है।